नमस्कार दोस्तों
KTurtleमें ग्रामर ओएफ टर्टलस्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टर्टल स्क्रिप्ट का व्याकरण और if एल्से कंडिशन
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु लिनक्स ओएस वर्ज़न 1204 और क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा
मैं मानता हूँ कि आपको क्टर्टल के बुनियादी कार्य की जानकारी है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
क्टर्टल आइकन पर क्लिक करें
हम टर्मिनल का प्रयोग करके भी क्टर्टल खोल सकते हैं
टर्मिनल खोलने के लिए एक साथ CTRLALTT दबाएँ
क्टर्टल एप्लिकेशन खोलने के लिए क्टर्टल टाइप करें और एंटर दबाएँ
पहले टर्टलस्क्रिप्ट देखते हैं
टर्टलस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के शब्द और सिम्बोल्स हैं
यह टर्टल को सूचनाएँ देता है कि क्या करें
क्टर्टल के ग्रामर ओएफ टर्टलस्क्रिप्ट में शामिल हैं Commentsकमेन्ट्स Commandsकमान्ड्स Numbersनंबर्स Stringsस्ट्रिंग्स वेरिएबल्स वेरिएबल्स और बूलियन valuesबूलियन वेल्यूस अब हम देखेंगे कि नंबर्स कहाँ रखने हैं
नंबर्स मैथमेटिकल आपरेटर्स कंपैरिसन आपरेटर्स और वेरिएबल्स में रखे जा सकते हैं
स्पष्ट व्यू के लिए मैं प्रोग्राम टेक्स्ट झूम करूँगा
पहले वेरिएबल्स देखते हैं
वेरिएबल्स वह शब्द हैं जो चिह्न के साथ शुरू होते हैं उदाहरणस्वरूप a वेरिएबल्स पर्पल रंग में चिन्हांकित हैं
असाइनमेंट इक्वल टो का उपयोग करके वेरिएबल इसका कंटेंट देता है
वेरिएबल्स में a100 नंबर्स हो सकते हैं
स्ट्रिंग्स ahello या बूलियन वेल्यूज जो ट्रू या फलसे है atrue वेरिएबल्स प्रोग्राम के निष्पादन समाप्त होने तक कंटेन्ट्स रखता है या जब तक कुछ और करने के लिए फिर से निर्धारित न किया जाए
उदाहरणस्वरूप कोड़ समझते हैं
टाइप करें a 2004 b 25 प्रिंट a b वेरिएबल आ के लिए वेल्यू 2004 निर्दिष्ट है
वेरिएबल ब के लिए वेल्यू 25 निर्दिष्ट है
प्रिंट कमांड टर्टल को कैनवास पर कुछ लिखने का आदेश देती है
प्रिंट कमांड इनपुट के तौर पर नंबर्स और स्ट्रिंग्स लेती है
प्रिंट a b टर्टल को दो वेल्यूज जोड़ने और उन्हें कैनवास पर प्रदर्शित करने का आदेश देती है
स्लो गति में कोड रन करते हैं
2029 वेल्यू कैनवास पर प्रदर्शित होती है
आगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखते हैं
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हैं और मैं एडिटर से वर्तमान कोड मिटा दूँगा और क्लीयर कमांड टाइप करूँगा तथा कैनवास को क्लिन करने के लिए रुन करूँगा
मेरे पास पहले से ही टेक्स्ट एडिटर में एक प्रोग्राम है
मैं अब कोड समझाती हूँ
रिसेट कमांड टर्टल को उसके डिफ़ॉल्ट पोझिशन में सेट करता है
कैनवासाइज 200200 कैनवास की चौड़ाई और ऊंचाई को 200 पिक्सेल्स में निर्धारित करता है
वेल्यू 11 वेरिएबल add के लिए निर्दिष्ट है
वेल्यू 20 5 वेरिएबल subtract के लिए निर्दिष्ट है
वेल्यू 15 2 वेरिएबल multiply के लिए निर्दिष्ट करनी है
वेल्यू 3030 वेरिएबल divide के लिए निर्दिष्ट है
गो 1010 टर्टल को कैनवास के 10 पिक्सेल्स बाएँ और 10 पिक्सेल्स कैनवास के ऊपरी ओर जाने का आदेश देता है
प्रिंट कमांड कैनवास पर वेरिएबल प्रदर्शित करता है
मैं टेक्स्ट एडिटर से कोड कॉपी करूँगी और उसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
ट्यूटोरियल रोकें और क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के पश्चात ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
प्रोग्राम रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कमांड जो निष्पादित हो रही है वो कैनवास पर चिन्हांकित हो रही है
टर्टल निर्दिष्ट स्थानों पर कैनवास पर वेल्यूज़ प्रदर्शित करता है
कंपैरिसन ऑपरेटर्स का उपयोग करने के लिए एक सरल उदाहरण पर विचार करें
मैं एडिटर से वर्तमान कोड मिटा दूँगा और कैनवास क्लिन करने के लिए क्लीयर कमांड टाइप करके रन करूँगा
स्पष्ट देखने के लिए मैं प्रोग्राम टेक्स्ट झूम करूँगा
टाइप करें
answer 10 3 प्रिंट answer यहाँ ग्रेटर थान ऑपरेटर के साथ 10 की 3 के साथ तुलना होती है
इस तुलना का परिणाम बूलियन वैल्यू ट्रू में संचित होता है
वेरिएबल answer और वेल्यू ट्रू कैनवास पर प्रदर्शित होता है
अब कोड रन करें
टर्टल कैनवास पर बूलियन वैल्यू ट्रू दर्शाता है
अब देखते हैं कि इस एप्लिकेशन में स्ट्रिंग्स कैसे काम करता है स्ट्रिंग्स नंबर्स की तरह वेरिएबल्स में डाले जा सकते हैं
स्ट्रिंग्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या कंपैरिसन ऑपरेटर्स में प्रयोग नहीं किया जा सकता है
स्ट्रिंग्स लाल रंग में चिन्हांकित होते हैं
क्टर्टल स्ट्रिंग के रूप में दोहरे उद्धरण में एक लाइन पहचानता है
मैं एडिटर से वर्तमान कोड मिटा दूँगा
कैनवास क्लिन करने के लिए क्लीयर कमांड टाइप कर रन करूँगा
अब मैं बूलियन वेल्यूज के बारे में समझाता हूँ
वहाँ केवल दो बूलियन वेल्यूज हैं ट्रू और फलसे
उदाहरणस्वरूप कोड टाइप करें
answer 75 प्रिंट answer बूलियन वैल्यू फलसे को answer वेरिएबल के लिए निर्दिष्ट किया हैं
क्योंकि 7 5 से बड़ा है
अब कोड रन करें
टर्टल कैनवास पर बूलियन वेल्यू फलसे दर्शाता है
आगे if एल्से कंडिशन के बारे में सीखते हैं
इफ कंडिशन केवल तब ही निष्पादित होती है जब बूलियन वेल्यू ट्रू मूल्यांकन करता है
एल्से कंडिशन निष्पादित होती है
यदि इफ कंडिशन फलसे है
मैं एडिटर से वर्तमान कोड मिटा दूँगा
कैनवास क्लिन करने के लिए क्लीयर कमांड टाइप करें और रन करें
मेरे पास पहले से ही टेक्स्ट फ़ाइल में एक कोड है
यह कोड 4 5 और 6 संख्याओं की तुलना करता है और कैनवास पर तदनुसार परिणाम दर्शाता है
मैं टेक्स्ट एडिटर से कोड कॉपी करूँगा और उसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगा
ट्यूटोरियल रोकें और क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के पश्चात ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
अब कोड रन करें
टर्टल वेल्यू 4 और 5 की तुलना करता है
और कैनवास पर 4 6 से छोटा होता है इस परिणाम को दर्शाता है
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा है टर्टल स्क्रिप्ट का व्याकरण और if एल्से कंडिशन अब नियत कार्य एक इक्वेशन को इफ - एल्से कंडिशन मैथमेटिकल और कंपेरिजन ऑपरेटर्स का उपयोग करके हल करें
प्रिंट और गो कंमाड्स का उपयोग करके परिणाम दर्शाएँ
नियत कार्य को हल करने के लिए कोई भी चार रैन्डम नंबर्स चुनें
रैन्डम नंबर्स के दो सेट्स को गुणा करें
कंपैरिसन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके परिणाम की तुलना करें
दोनों परिणाम दर्शाएँ
कैनवास के केंद्र में अधिक से अधिक परिणाम दर्शाएँ
आप अपनी पसंद का कोई भी इक्वेशन चुन सकते हैं
इस निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
आईआईटी मुंबई की ओर सेमैं आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद